ऊपर काले रंग के बोर्ड पर केलकटा रेगैलिया लिखा हुआ है।

डमरू सामान रखने वाला कंघी--

इत्यादि बहोत सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं।

सामने एक टेबल है जिसके पास चार आठ कुर्सियां रखी हुई हैं।

पर दीवार पर बहोत सारी फोटो टांगी हुई हैं।

मिट्टी ईंटे बालू इत्यादि बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं।

सामने बहुत सारी गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

नीचे जमीन पर सफेद रंग की टाइल्स बिछी हुई है ऊपर सीलिंग का रंग सफेद है।

दाई तरफ लाइन से लाल हरे सफेद काले इत्यादि रंग के कुर्ते टांगे हुए हैं जो--

यह तस्वीर एक शॉपिंग मॉल या फिर सुपर मार्केट की लगती है।

इसमें बाईं ओर बहुत सारे ब्रेडस रखे गए हैं।

और दाईं ओर कंप्यूटर हेडफोन इत्यादि वस्तुएं हैं।

कुछ सामान रखा है जिस पर बच्चे कूद रहे हैं और रिंग के अंदर जा रहे हैं।

यह तस्वीर एक रेलवे स्टेशन की लग रही है।

बीच में पटरियां दिखाई दे रही हैं।

पीछे बहोत सारे लोग लाइन से खड़े हैं।

यहां फर्श पर सफेद रंग की टाइल्स लगी हुई है।

इसमें बहोत सारी ईंटों का प्रयोग किया गया है।

इसके बगल में आयत के आकार का कुछ रखा हुआ है।

सामने एक बड़ा सा झंडा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह रॉयल एनफील्ड बाइक की लग रही है।

कार बाइक स्कूटी बहुत सारे प्रकार की गाड़ियां हैं।

तस्वीर में एक सड़क दिखाई दे रही है।

तस्वीर में सामने छे व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं।

पीले दूसरे ने सफेद तीसरे ने हल्का सफेद और तीसरे चौथे व्यक्ति ने आसमानी रंग का टीशर्ट पहन रखा है।

तस्वीर में सामने एक इमारत दिखाई दे रही है।

इसके सबसे ऊपर एक गोल घड़ी टंगी हुई है।